पीछे कुछ सीढ़ियों जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसका रंग पीला और लाल है पीछे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

यहाँ मछलियाँ रखी हुई हैं बड़ी-बडी पीछे भी बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं बल्ब जल रहे हैं।